यह तस्वीर एक आदमी की हेयरकट की है जो शायद किसी सैलून में ली गई है।

दुकान में मेंस वेयर का सेक्शन है जहां पुरुषों के कपड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

यह तस्वीर एक बेकरी या केक शॉप के काउंटर की है जिसका नाम फ्लावरऔरा है और साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है।

दीवाल पे एक लकड़ी का बैनर लगा हुआ है और उसमें दुकान का लोगो भी बना हुआ है।

यह तस्वीर एक धार्मिक समारोह सरस्वती पूजा का दृश्य है।

देवी की प्रतिमा केंद्र में रखी हुई है जिसके सामने पूजा की सामग्री है।

कमरे में एक लैपटॉप भी दिख रहा हैं।

उसके चारों ओर लाल और सफेद रंग की टाइल्स से

स्विमिंग पूल के पीछे कुछ इमारत दिखाई दे रही हैं कुछ नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं।

में कई कंपार्टमेंट है और उसमें पुरुषों की अंदर ग्र ग्रामस के डब्बे रखे हुए हैं।

यह तस्वीर प्राकृतिक झरने या पानी के स्रोत है।

यह झरना बहोत बड़ा नहीं लेकिन यह प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत प्रस्तुत करता है।

पेट्रोल पंप विशिष्ट एच_पी का का एक बड़ा चैन दवा है वहां कई फ्यूल पंप है।

यह तस्वीर दुर्गा पूजा के एक जुलूस या विसर्जन की दृश्य है।

आसमान में हल्का नीला रंग है।

टावर धातु से बना हुआ है और काफी ऊंचा है इस पर कई एंटीना लगे हुए हैं।

क्या तस्वीर एक होंडा का का शोरूम की है जिसका नाम विक्ट्री होंडा है।

एक ईमारत का निर्माण भी हो रहा हैं।

यह तस्वीर एक बस स्टेशन या बस डिपो को दिखाया जा रहा है।

छोटे गमले प्लास्टिक के बैग मे लगे हुएं हैं।

दुकान के ऊपर आइसक्रीम वाला नाम लिखा हुआ है और आइसक्रीम कार्ट का चित्र भी बना हुआ है।

यह तस्वीर दो आइसक्रीम फ्रिजर की है जिन पर क्रीम बेल ब्रांड के विज्ञापन है।

नीचे वाले फ्रिज पर फैंटास्टिक आइसक्रीम का विज्ञापन है।

यह तस्वीर एक ग्रामीण इलाके में स्थित तालाब या जलाशय की है।

तालाब में पानी भरा हुआ है और इसके किनारे कंक्रीट या मिट्टी से बना हुआ--

यह तस्वीर एक कैफे के बाहरी हिस्से की है जिसका नाम रांची कैफे हैं।

नीचे कॉफी पिज़्ज़ा बर्गर भी लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक दुकान में रखी कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की अलमारी की है।

कमरे में पंखे भी लगे हुए हैं और रोशनी भी अच्छी है।

उनके पास किताबे है अन्य सामग्री भी --

कुछ लोग की चप्प्ले किनारे पर रखी हुई है।

उनके पास कागज कैंची गोद और अनेक सामग्री है।

इस दीवार की दोनों तरफ दीवारे है और एक गेट लगा हुआ है।

ये दो भागों में बटा हुआ है।

शोकेस में साड़ी और सूट जैसे कपड़े टंगे हुए हैं।

कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

इस द्वार पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है।

हॉस्पिटल की क्रेच वॉल पे बड़े अक्षरों में हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है।

में कई कारे खड़ी है जिनमे में एक सफेद रंग की एस_यू_वी प्रमुखता से दिखाई दे रही है।

कुछ कारें ढकी हुई जगह में खड़ी है।

दुकान में रंगीन छाता रॉलिक ब्रांड के आइसक्रीम और पेय पदार्थों का विज्ञापन दुकान के सामने लगे हुए --

यह तस्वीर एक सरकारी इमारत का दृश्य है।

इमारत के सामने एक हरा भरा लॉन है।

इमारत के ऊपर सरकार का लोगो भी है इमारत के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग खड़े है।

साइन बोर्ड पर यह जानकारी दी गई है।

तस्वीर में कई कारे लाइन से खड़ी है जिनमें एक नीली कार सबसे आगे है।